ये एक मंदिर का फोटो है जहां पर लिखा गया है कि मन मंदिर को जब साफ और उज्जवल रखोगे।